लाइटे वगेरा दिख रही है सामने एक बड़ा सा सीसा भी लगा हुआ है पंखे भी दिख रहे है ।

सामने में एक पोल हैं पेड़ वेगरा हैं ऊपर में खुला आसमान भी हैं।

इस भीड़ मे खेत दिख रही है जो कि हरी-भरी है पूरा घासो से भरी है।

एक पोस्टर बी लगा हुआ है एक लड़की का कुछ डम्बेले वागेर रखी हुई है एक खिड़की बी दिख रहा है कुछ बैट ने के लिए भी जगह दिया गया है।

मे एक सीन दिख रही है जिसमे बहुत सारी मशीने वागेर है एक्सर्साइज़ वागेर करने के लिए ।

सामने मैं की एक इस स्कूटी एक आदमी है कुछ झाड़ू वगेरा रखा हो कुछ बॉक्स रखा हो एक आइसक्रीम का डब्बा भी बड़ा सा रखा हुआ हैं।

ये सेंट्रल ऑफिस हैं एक लेडीज हैं जो नकाब पहनी हुई हैं एक बच्चे को गोद मैं ली हुई है काले रंग का गेट {gate हैं पीछे मे एक डआब का बड़ा सा गाछ है ऊपर मैं नीला आसमान भी देख रहा है एक छोटा सा बॉक्स भी लगा हुआ हैं। }

तस्वीर में एक लम्बा सा एक पेड़ दिख रहा है जिसमें पिले रंग का फूल लगा हुआ है दो बाइक दिख रही है पीछे हरे लाल रंग के एक पेंट किया हुआ एक घर भी दिख रहा है कुछ कुछ पत्ती वगैरा गिरी हुई है निचे ।